यहाँ पर एक काफी बड़ा एक हॉल हैगा हॉल में टेबल रखी हुई हैगी टेबल में तीन-चार टीवीया रखी है लाइन से।

यहाँ पर एक किराने की दुकान हैगी इस दुकान में काउंटर रखा हुआ है फर्नीचर का बना हुआ --

संतरे हैं अनार हैं और अ और ऊपर टंगे हुए भी हैं कुछ फल सेब टंगे हुए हैं अनार टंगे हैं काफी सारे फल रखे है।